यह एक अस्पताल है अस्पताल के बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है।

उसके ऊपर क्रिकेटर्स का चित्र लगा हुआ हैं।

नीचे बाइक खड़ी है एक लड़का बाइक पे जा रहा है।

यहां एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के ऊपर लाइटिंग है |

यहां एक कॉलेज का कैंपस है कैंपस के ऊपर --

नीचे एक वैन खड़ी है वैन के पास दो खम्बे हैं ।

अपने पेशेंट को दांत का इलाज कर रहा है।

तेल की बोटले हैं। नीचे चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं।

सामने दरवाजे हैं एक केंची रखी हुई है।

एक जिम है। जिम के अंदर कसरत करने का सामान रखा है।

एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है।

ये नीला कलर करा है।

एक नदी है नदी के ऊपर बहुत बड़ा पुल बना हुआ है ।

पानी में ऑरेंज कलर दिख रहा है।

पास में आदमी है पीछे दीवार पर डेकोरेशन करा हुआ है ।

जन दिवाल के ऊपर --

एक दुकान है। दुकान के अंदर अलमारी है। अलमारी के --